यह एक कारखाना है यहां से कारखाने से सामान ले जाते हुए कुछ ट्रक हैं।

यहां पर होलसेल का भी कार्य चलता है।

यहां पर एक स्कूल की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यह नज़ारा एक पहाड़ इलाका का है पहाड़ी इलाके में हमें छोटे-छोटे घर नज़र आ रहें हैं।

सामने भी चालू है यह भी चालू है यह भी इन्कम्प्लीट यानी की पूरा नहीं हुआ इसका काम इसके अंदर --

यहां पर अंदर से कुछ दृश्य नजर आ रहा है जहां पर ये दो व्यक्ति बैठे हुए हैं बाहर।

चेयर लगा रखी है साइड में एक लेक्चर स्टैंड है।

भौत ही छोटे दुकान दिखाई दे रहे हैं पहाड़ी इलाका है।

यह मारुति सुजुकी की गाडी है यह रात के समय में यहाँ पर पार्किंग के अंदर खड़ी है।

काले रंग के चश्मे लगा रखे हैं यह यहां पर फोटो क्लिक कराने के लिए आया आया हुआ है।

रोने की लिए लाइन में बैठे हुए हैं यह व्यक्ति एक बाहार खड़ा होकर फोटो क्लिक करा रहा है।

चाहे बिस्कुट पेप्सी तेल कुरकुरे --

दिखाई दे रहे हैं यहां पर यह दुकान एक टेम्पररी दुकान बना रखी है।

यह रोड के ऊपर स्थित है यह कुर्सी है।

यह एक ऑफिस का ऑफिस का एक द्रिश्य है ऑफिस के अंदर एक ऑफिसर बैठा हुआ है।